इस पिक्चर मे हमे दिखाई दे रहा है की सामने सरस्वती जी का मंदिर है और साइड में बहुत सारे मूर्तियां है जहां पे मूर्तियां बनती है।

इस पिक्चर मै हमें एक्ससिस बैंक दिखाई दे रहा है जहां पे ट्वेंटी फोर ईंटो सेवन वर्क चलते हैं और यहाँ पे शीशे का पूरा गेट लगा हुआ है। सामने बोहोत सारे बाइक लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं कुछ खरे हैं कुछ चल रहे हैं।

इस पिक्चर मे हमे एक कोई मॉल का पिक्चर दिखाई दे रहा है जहां पे ग्रौसरी सामान रखे हुए है इसमे कप लटके हुए है बहुत सारे ही कप है कुछ रखे हुए है और ये ये इसमें पिक्चर लिया गया है और यहाँ से ही कप बिकते हैं और लोग खरीद-खरीद के ले जाते है।

इस दृश्य में हमें बहोत बकरियाँ चरती हुई दिखाई दे रही है ।